मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा पार्क दिखाई दे रहे हैं उसमें ढेर सारे आदमी लोग भी है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सारे बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

जो की उन लोग का कलर व्हाइट और नेवी ब्लू कलर की है।

और उसके सामने में छोटे छोटे घर भी है।

ढेर सारी खिड़कियां लोग भी है जो कि ओ ब्लू कलर का है।

और ढ़ेर सारी साइकिल भी है और साइकिल की केरी में बुक्स लोग भी रखा गया है।

उधर वॉल भी उठाया हुआ है।

उसके अंदर में दो ऑटो है और ढ़ेर सारे आदमी है।

नीचे में पूरा ग्रीन कारपेट लगाया हुआ है।

ढ़ेर सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे लोग भी हैं और बड़ा बड़ा पत्थर लोग भी है।

घर का कलर वाइट ब्लू और येल्लो कलर का है।

बड़ा सा पोस्ट भी लगाया हुआ है और साइड में एक स्कूटी भी है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक बड़ा सा रोड है और उसमें तीन बाइके--

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा घर दिखाई दे रही है और घर के ऊपर में कुंदन ढाबा बोल के लिखा गया है वेज और नॉनवेज भी लिखा गया है।

ढ़ेर सारे बड़े बड़े पेड़ लोग भी हैं और बड़े बड़े पहाड़ लोग भी आसमान पूरा ब्लू कलर का है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रही है और रूम में ढेर सारे कुर्सी है।

कुर्सी लोग के ऊपर में ढेर सारे आदमी बैठ रहे हैं।

रूम का कलर व्हाइट है और एक छोटा सा खिड़की भी है।

मुझे इस तस्वीर में एक फ्लावर स्टैंड दिखाई दे रही है जो कि वो पांच ठो है।

टेबल का कलर भी सिल्वर कलर है।

ढेर सारे गाड़ी और बाइक भी दिखाई दे रही है।

और आसमान पूरा ब्लू और व्हाइट मिक्स करके है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रही है और रूम में तीन फोटो भी है उसमें फूलों का माला भी लगाया हुआ है।

ग्रीन कलर कारपेट भी बिछाया हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा घर लोग दिखाई दे रही है जो कि वह जो पत्ता और बंबू से बनाया हुआ है।

मुझे इस तस्वीर मे एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रही है।

अंदर में तीन स्कूटी है और एक चेयर भी है और एक डोरमैट भी है।

जो कि वह कंप्लीट नहीं हुआ है और दो दरवाजे भी है वह भी ब्लू कलर की है।

और छोटे छोटे ब्रास लोग भी है और बड़े बड़े पेड़ भी है।

में बिल्डिंग बनाया है और स्कूल का कलर व्हाइट है।

घर का कलर भी व्हाइट और ग्रीन का है।

ढेर सारे बलूंस भी लगाया हुआ है।

फैन लोग भी लगाया हुआ है।

गेट भी लगाया हुआ है और दीवार का कलर भी व्हाइट है।

समुंदर के किनारे में छोटे छोटे पत्थर लोग भी हैं।

में बड़ा बड़ा पहाड़ लोग भी है।

घर का काला गोरा व्हाइट है और लाइट भी लगाया हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा फार्मेसी दिखाई दे रही है।

ये सभी वायर लोग भी है और घर का काला भी--